--और टेबल जो कुर्सी सी भी रखी हुई है दो तीन अच्छे से नहीं दिख रही है और बच्चा कुछ कर रहा है शा --

पीछे कुछ लिखा सा भी है और नीचे टाइल्स भी लगी हुई है और गुब्बारे उबारे भी रखे हुए--

का दिख रहा हैं जिम करते हुए और बड़ा वाला डंबल भी लिए हुए हैं और कुछ बोर्ड भी लगे है काले कलर के और नीचे टाइल्स भी पीले दिख रही है।